इमेज में हमें एक घर दिखाई दे रहा है घर की दिवार हमें सफ़ेद रंग की दिख रही है और उसमे हमें दरवाजे दिखाई दे रहे है जो नीले रंग का है और खिड़की भी दिखाई दे रही है।

ग्राउंड के किनारे पर हमें कुछ कार दिखाई दे रही है और बाइक भी दिख रही है सामने हमें झंडा दिख रहे है झंडा ऑरेंज और पीले रंग के है बाउंड्री भी दिखाई दे रही है और पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है।